बगल में क्यू_आर कोड का दृश्य दिख रहा है।

कीबोर्ड रखा हुआ है और डिब्बा रखा हुआ है रैक बनाया हुआ है रैक पर बहुत सारा साबुन रखे हुए हैं।

यहां पे कई सारे मशीन का दृश्य दिख रहा है।

दृश्य में दुकान का दृश्य दिख रहा है।

और गोल्डन का रेक पर रखा हुआ है फेस वॉश ।

इस दृश्य में दुकान का दृश्य दिख रहा है बगल में एक बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ है।

और यहां पे बहुत सारे साबुन रखे हुए हैं।

और ऊपर में पिक और वाइट कलर का है बीच में एक बाइक रेड कलर की खड़ी है।

उनका शर्ट का कलर ब्लू है यहां पर वाइट कलर का स्कूटी जा रहा है।

यहां पर एक आदमी जा रहा हैं उसका शर्ट का कलर व्हाइट है यहां पर ऑटो जा रहा है उधर से ऑटो भी आ रहा है और ऊपर आसमान साफ है।

इस दृश्य में धान कूटने का मशीन का दृश्य दिख रहा है जो ऑरेंज कलर की है।

और उसका कलर है ब्लू कलर का।

एक आदमी खड़ा है बगल में।

इस दृश्य पे सेंटर यूनिवर्सिटी आफ झारखंड का दृश्य दिख रहा है।

एक आदमी जो स्टेज पे खड़ा होकर गिटार लेकर बजा रहा है।